दूगो सरिया लगी हुई है और लेफ्ट साइड मे देखें तो आपको यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर के पेपर दिखाई देंगे पड़े हुए। देखें यहाँ पे ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए--

यहाँ पे देखिये यहा कुछ रेड कलर के पोस्टर दिखाई दे रहै होगे और यहा पे देखिये एक मशीन रखी हुई है। जिसका कलर व्हाइट और ब्लू कलर का है। यहा पे केबिन के बाहर बहुत सारे लोग खड़े है और देखिये यहा पे फेन भी लगा हुआ है। यहा का कलर व्हाइट कलर का है।

यहां पर देखिए आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही हैदेखिए मूर्ति कितनीअच्छी बनाई गई है इस मूर्ति मे गणेश जी की अ फोटो दिखाई दे रही है और देखिए यह मूर्ति मूर्ति मे है बहोत सारी चीजे दिखाई दे रही है ।

यहाँ पर देखिए आपको एक वाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है देखिए घर के बाहर बहोत अच्छी सजावट की गई है और यहाँ पर देखिए झालर लगाई गई है और यहाँ घर के अंदर कुछ फूल के गुलदस्ते लगाये -----

उसके नीचे का जो बिल्डिंग है उसका डार्क उसका लाईट ग्रीन कलर का है। और यहां पे देखिए सबसे नीचे जो बिल्डिंग है उसका वाइट कलर का कलर है ।

यहाँ पर देखिए एक वाईट कलर की अ अ वाईट कलर का घर दिखाई देगा यहाँ पे जो गेट है ये ग्रीन कलर का है और देखिए घर के अंदर एक आपको पेड़ दिखाई देगा देखिए घर की जो सबसे ऊपर की मीनार है वो ग्रीन कलर की है और घर के बाहर एक बाईक खड़ी है।

यहां पे देखिए आपको फ्लावर्स से डेकोरेशन दिखाई दे रही दिखाई गई होगी। यहां पे देखिए जो पीछे का जो ब्रेक बैकग्राउंड है यहां पे देखिए वाइट कलर का कर्टेन लगा हुआ है और जमीन में कुछ वायर फैले हुए हैं। और यहां पे देखिए दो हेलोजन लगे हुए हैं।

यहां पे देखिए खेत दिखाई देगा। देखिए खेत में येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। कुछ कुछ पेड़ आपको सामने दिखाई देंगे। पेड़ बहुत ही खिले हुए हैं और आपको दो पहाड दिखाई देंगे एक पहाड़ ऊंचा है। एक पहाड़ नीचा है। पहाड़ के ऊपर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको।

यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बडा-सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा। और देखिए यहां पे पेड़ के पास कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहां पे कुछ सुखी हुई लकड़ियां भी लगी है। सामने आपको तीन चार पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे।

अ कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी है।